मुझे इस फोटो में एक हेड लाइट दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में जबलपुर एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में रेत दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में एक पोस्टर दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।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

बहोत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है।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

मुझे इस फोटो में बहोत सारी कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।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

मुझे इस फोटो में बहोत सारी कुर्सियां दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में एक फ्रिज दिखाई दे रहा है।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

मुझे इस फोटो में एक ड्रम दिखाई दे रहा हैं।